एक कैंटीन है वहाँ पर वहाँ पर खाने की बहुत सी चीजें मिलती हैं।

दिवाली आ गयी है अपने घर पे सजावट नहीं हुई है। अब हम एक बाजार जायेंगे वहा से फूल वगेरा लेकर आएंगे डेकोरेशन का सामान कुछ जो फूल की बेल होती है वो लायेंगे वो और अच्छी लगती है कलरफुल वो लायेंगे उससे हमारा घर और अच्छा लगेगा यानी कोई भी गेस्ट आएगा तो दे --

और हमारे यहाँ स्कूल में बाल उत्सव हुआ था यार। इस बाल उत्सव में इस बार फर्स्ट प्राइज पे एस एस की टीम आई थी यार। मैं यार थोड़े बहुत गुलदस्ते खरीद लता यार मैं भी यार वहाँ से यार। स्कूल में काम कर देते यार हां का यार फिर मेरा भी नाम होता सही रहेगा न ये।

इस वाले मोहल्ले चले यार सुगंध मौर्या यार वहाँ पे नयी जिम खुली है यार उसमें ट्रायल ट्राई करके आते हैं क्या फीस चल रही है उसकी यार हमारे यार जिम वाले जो उस्ताद बहुत पैसे ले रहे है यार हरबार और प्रोडक्ट पे भी बहुत पैसे कमीशन खाते हैं यार मैंने कहा उस नयी वाली जिम में ट्राई करूंगा यार नए वाले में अच्छा भी लगेगा यार और पास भी पड़ेगी यार वो --

तुझे पता है यार आजकल शादियों में जो डेकोरेशन होती है उसमे न लोहे वाली पाइप होते है वो बहुत लगते हैं यार क्योंकि यार पहले जो लकड़ी के जो दबाते थे डंडे वगेरा वो उनसे ना वो हवा को झेल नहीं पाते मतलब जो थोड़ा आंधी तूफान चल जाता है तो उनसे वो गिर जाते हैं तो इसीलिए ना जो लोहे वाले होते हैं पाइप --

और पीछे का बड़ा तालाब दिखता है उसमें हर फोटो में बड़ा अच्छा लगता है --

यार मोमोज खाने में कितनी अच्छी लगते हैं और इनकी चटनी जो होती है उसमें और मिर्चों वाली और टेस्टी होती है और उसकी उमें सफेद वाली ग्रेवी जो देते हैं और कितनी अच्छी --